और एक अ मतलब थर्मस भी रखा है पीछे फ्रिज भी रखा --

ये एयरपोर्ट है एक साई वन साइड गेट से सामान उतर रही है दूसरी साइड गेट से प्लाई मतलब लोग उतर रहें हैं व्हीलचेअर भी बनी हुई है।

केंद्र है जहाँ पर आधार अपडेट किये जाते हैं आधार इनरॉलमेंट इनरोलमेंट अपडेट सेंटर है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट --

कुछ लड़कियां क्लिपस लगाई कुछ लड़कियां बाल खुले हैं कुछ लड़कियां टी-शर्ट --

तो ये बुकस की शॉप है जहाँ पे पेन पेन्सिल्स रखे हुए हैं।